और काफी सारे छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी हैं।

जो कि तीन चार बच्चे बैठ कर हर एक टेबुल पर पड़ रहे हैं।

बगल मे ही आप देख सकते है एक छाते को लगाकर तीन टेबल लगाए गए हैं जो की आप वहां से वहां पर बैठ के आराम से पी सकते हैं।

कार्बोटर को खोलकर ठीक किया जा रहा है।

यह कोई जगह है यहां पर शादी समारोह हो रहा है और बहुत सारे खूबसूरत तरीके से सजाया गया --

और एक दो लेडिस चलकर आ रही है और बहुत सारे फैंसी फैंसी कलर की लाइटिंग लगाई गई है।

सूरज भगवान जी की काफी अच्छा लग रहा है देखने में सूरज भगवान और उसके बगल में ही एक टावर लगा हुआ है।

और दो तीन आदमी साइड में खड़े हैं और एक आदमी सूता को लेकर नाप रहे--

एक गाड़ियां पर एक बोरियां लदी हुई हैं और एक झोला टंगा हुआ है।

और बाहर में दो तीन गाड़ियां खड़ी हैऔर ए एक दो सोफे लगे हुए हैंबैठने के लिए--

जिम को काफी बैलून गुब्बारे से सजाए गए है।

यह एक बस है और बस के बगल में भी एक बस खड़ा है और इस बस में काफी सारे फूल के माला लगाए गए हैं और एक आदमी बस के बगल में ही खड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं।

यह एक मंदिर है जो कि बहुत ही बढ़िया मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर को देखने में।

और बगल में ही एक स्प्राइट केट रखा हुआ है और एक चौकी लगा--